यहां पर सामने एक बहुत अच्छी स्टेज लगी हुई है।

और वहां पर काफी अच्छी अच्छी लाइट लगी हुई है।

और वह कुछ गाना गा रहे हैं।

यहां पर सामने काफी सारे गमले टंगे हुए हैं।

और यहां पर कुछ पौधे टंगे हुए हैं।

और यहां पर कुछ कुर्सियां भी पड़ी हुई है और यहां पर आस पास कोई सामान पड़ा हुआ है।

यहां पर एक बहोत बड़ा जंगल है और जंगल में बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं और यहां पर लोहे के कुछ पाइप लगे हुए हैं।

वो थोड़ा लकड़ी का गेट लगा हुआ है जाली वाला।

बाहर कुछ कट्टे रखे हुए हैं जिनमें सामान रखा हुआ है बाहर कुछ व्यक्ती भी है।

यह एक होटल है और इस होटल में काफी कुर्सियां पड़ी हुई हैं और कांच की टेबल रखी हुई है।

और यहां पर काफी प्रकार की मछली पड़ी हुई है यहां पर अलग अलग साइज की छोटी बड़ी सभी प्रकार की मछली रखी हुई है और यहां पर दो व्यक्ति हैं।

और यहां पर आस पास काफी घास है और काफी सारे पेड़ पौधे लगे हुए है।

और इस स्विमिंग पूल में बहुत सारा पानी भरा हुआ है और यहां पर कुछ बच्चे इसमें नहा रहे हैं।

और इसके बाहर लिखा हुआ है श्री मंदिर हनुमान।

यहां पर एक लैपटॉप भी रखा है इस किचन में।

और यहां पर कुछ स्टूल रखे हुए हैं।

और यहां पर लकड़ी के कुछ छोटे छोटे घर बने हुए हैं जिन पर लकड़ी के जीने लगे हुए हैं।

और यहाँ पर एक ए_सी लगी हुई है और पीछे एक स्टीकर लगा हुआ है।

और इसके बाहर कुछ बाइक और कुछ स्कूटिया खड़ी है।

और इसके आसपास काफी सारे पेड़ पौधे और घास जमी हुई है।

और यहां पर कुछ कूड़ेदान भी बनाए गए हैं।